इस विंग में दस बा ..बार पंद्रह बीस कुर्सी दिखाई दे रही हैं इस विंग में हमको दो तीन कुर्सी दिखाई दे रही है एक दिखाई दे रहा है देखने में बहोत अच्छे कार्यालय दिखाई दे रहा हैदेखने में हमे कांच दिखाई दे रहे है।

और इसमें हमें एक लाल कलर की शटर दिखाई दे रही हैदेखने में बहुत अच्छी शटर दिखाई दे रही है इसमें एक मेडिकल का बोर्ड लगा हुआ हैं। यहाँ पर एक बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिस पर कांच लगे हए हैं देखने में बहुत अच्छी बिल्डिंग दिखाई दे रही हैं।

और सफ़ेद कलर की बिल्डिंग दिखाई दे रही है। ये देखने में बहोत अच्छी दिखाई दे रही है। यहाँ पर दो तीन लोग खड़े हुई हैं और यहाँ पर हमें दो तीन कमरे दिखाई दे रहे हैं। देखने में बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है।

एम क्रीम कलर का पेंट किया गया है इसमे दो हिरन जैसे दिखाई दे रहे है एक खतरनाक दरवाज़ा दिखाई दे रहा है इसमे बहुत सारे पेड़ लगे हुए है अंदर।

हमें कॉलेज जैसा दिखाई दे रहा है। इसमें ब्लैक कलर का गेट बोहोत अच्छा पेंट किया गया है। इसमें साइकिल दिखाई दे रही है एक गाड़ी दिखाई दे रही है। इसमें हमको --

बोहोत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर हमको बिजली का खम्बा दिखाई दे रहा है यहाँ पर हमको तार दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर हमको एक छतरी दिखाई दे रही है | यहाँ पर हमको गली दिखाई दे रही है।